है और बीच में गोल चक्र गोल्डन चक्र लगा हुआ है जिसके चारों ओर--

सामने एक कांच का बड़ा बॉक्स दिख रहा है नीचे जिसमें तौल कांटा है ऊपर एक कांच के अंदर--

सामने एक छत दिख रही है। जिसके ऊपर लोहा बिछा हुआ है और बहोत सारे--

सफेद और ऊपर पत्थर जैसी डिजाइन बनी हुई है और पानी बना हुआ है जिसमें मछलियों के चित्र--

और सफेद कलर के फूल लगे हुएं है और हरे पत्ते लगे हुए हैं नीचे--

सामने एक पेट्रोल पंप का टैंक दिख रहा है जो ऊपर सफेद नीचे पिंक कलर का है और--

अह ऊंचा पहाड़ दिख रहा है जो नीला नीला दिख रहा है नदी दिख रही है जिसका पानी सफेद दिखाई दे रहा है।

कलर का हैं और जिसमें बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहें हैं और टेबले लगी हैं जिस पे गुलदस्ते--

दिख रही है। कुछ पुलिस वाले खडे हुए है। पीछे बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

सफेद कलर की है और इसके पत्ते लेकिन व्हाइट दिख रहे है और इसके पीछे--

ऊपर दिखाई दे रहा है और ऊपर बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पे टोपी लगाए हुए ये जो पीली कुर्सी पे बैठा है और उसकी साइड में एक नीली कुर्सी रखी है जिस पे --

झाड़ू लगा है और सामने एक कुर्सी है काले कलर की पीछे दीवार में एक पोस्टर लगा है जिस में--

अ-अ ब्राउन कलर की जिसके चारों ओर नीली पट्टी लगी हुई है और चारों ओर सफेद कलर की दीवाल है सामने एक गेट है और सब में दीवार --

नीले कलर का पर्दा लगा हुआ है और एक आधी लड़कियां सामने बैठी हुई है और पीछे--

सामने एक नदी दिख रही है जिसका पानी सफेद दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे बड़े--

पत्थर दिख रहे हैं और कही कही बीच में हरी घास दिख रही है और बीच में जाली बंधी हुई है जो लोहे की है और उस साइड बहुत सारे--

हह दिख रही है और पीछे कुछ पेड़े दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीला सफेद--

शोरूम कलर की है और खंभे बने हुए हैं जिन पे लाइट लगी हुई है साइड में--

लिखा है और उसमें लाल लाइट जल रही है और दो खिड़कियां बनी हुई हैं जिसके अंदर लाइट दिख रही है ऊपर--

पुल लगे हुए हैं और रंगीन सर्किट लगी हुई है और अंदर एक सफेद पोस्टर --